नीचे चॉकलेट भी रखा हुआ है जिसमें किटकैट और डेरीमिल्क है।

वहां पे बहोत सारी बाइक और स्कूटीयां खड़ी है कुछ लोग भी खड़े हैं।

और कुछ कार और स्कार्पियो भी खड़ा है जिसमे की स्कार्पियो का कलर सफेद हैं।

ये फैशन की दुकान का काउंटर है काउंटर के ऊपर में चॉकलेट वगैरह के कुछ डब्बे रखे हुए हैं।

इस चित्र में एक बस दिखाया गया है जो ऑरेंज और सफेद कलर से पेंट किया हुआ है।

इसकी खिड़कियों में परदे लगे हैं।

उसके सामने के टेबल पे एक पानी का बोतल है और उसके पीछे वाले टेबल पे भी एक पानी का बोतल --

चट्टान जहां तहां बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

लोहे के फ्रेम में एक बोर्ड लगा है जिसमें टैगोर हिल पार्क रांची लिखा है।

ये एक पेट्रोल पंप का दृश्य है जहां पे कुछ लोग टू व्हीलर में अपना तेल भरवाने आए हैं।

काउंटर पे पानी की बोतल रखी हुई है।

और उसके हाथ में एक पाइप है व्यक्ति नजर पे टोपी लगा रखा है।

इस दृश्य में टेबल के पास एक व्यक्ति खड़ा नजर आ रहा है उसके पीछे में एक चाऊमीन का स्टाल है।

इसमें से कुछ बच्चों ने अपनी टी शर्ट पहना है किसी ने लाल और किसी ने काला और सफेद टी शर्ट पहना है।

प्लेट में खाने का कुछ वस्तु रखा है जिसमें नंगी सफेद और हरे रंग का प्रयोग किया गया है।

यहां पे पानी में दो नाव खड़े हैं।

दीवाल के अंदर में काले रंग का सोफा दिखाई दे रहा है।

सड़क के एक साइड में कार खड़ी है और एक बाइक वाला भी है।

एक झरने का चित्र है जो चट्टान से बहते हुए नीचे की तरफ आ रहा है।

एक व्यक्ति काउंटर के बाहर है उसने भी लाल कलर का टी_शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए है।

इनके सर पे टोपी भी है पीछे में मछली आकार की दो मूर्ति रखी है।

और एक साइड की दीवार पर एक स्विच बोर्ड भी नजर आ रहा है।

इस दृश्य में एक टुकटुक नजर आ रहा है टुकटुक हरे रंग का है इसके आजू बाजू में दो व्यक्ति खड़े हैं।

उसके पीछे में भी एक टुकटुक है जो ब्लू कलर का है।

इस चित्र में पांच तोता है।

और तोता के खेलने के लिए नीचे एक छोटा सा झूला भी लगा हुआ है।

और इसपे बहोत सारी तेल पिया मछली रखी हुई है।

और अंदर में बोरियां रखी हुई है।